जम्मा पैहनले हई सभी आदमी समन जूता-उता पैहनले --

कागज के बनाबै छय कैयची अय लखरे सबे लखरे एगो --

सब हेय सब रंग के कपड़ा पहिनले वही एगो मर्दाना पहनले।

ओ तोय में आदमी होय दो चक्का के फेकल होय आदमी कागज लेले होय जाय छे।

कोनो काच हई कउनो छोट हई कोनो --

बहुते समाने में के हई नीचा पक्का टाईल्स - उयल्स लगा रा तराजू हई।

मोटर साइकिल हेय डुबल में दु गो आदमी हेय।

मिल्क चिके कूट हई ताड़ हई हरिहर-उज्जर।

टोपी पहनले हई चश्मा लगयले हईबोतल हई।